बॉक्सेज बनाई गई है जैसे कि आप देख पा रहे है यह बहुत ही अलग-अलग प्रकार की --

इस मेडिकल का नाम है रंजन मेडिकल ए.एन.सी. यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इलाज किया जाता है और सस्ते में।

पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल में यह एक मंडप है जहा पर फूलो के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई गई है अलग-अलग रंग-बिरंगे से क्योकि यहाँ पर --

गार्डन भी लाया गया है।

यह एक रोड है और यह रोड में गाडी आर-पार होती है यह पर यह रोड बहुत ही अच्छा है और साफ़ सुथरा बनाया गया है।

यह एक स्कूल हैं और यह स्कूल में बच्चों के द्वारा अलग-अलग चित्रकला बना रही है जो कि सारे पेपर से ही बना रहे हैं और जो अच्छे --

यह एक झील का फोटो है जो शहर के बीचो बीच स्थित है ।